उस से ऑरेंज कलर का धुंआ निकल रहा है।

इमेज में कुछ लड़कियाँ सर्किल बनाये खड़ी हुई है सभी ने रेड एंड व्हाइट क्रिसमस कैप पहनी हुई है ।

आ जिम मशीन्स रही हुई है मिरर्स लगे हुए है।

अलग-अलग ब्रीड की मछलियों के ढेर लगे हुए हैं।

आ वेट मशीन रखी है बाल्टी रखी हुई है कुछ लोग बैठे मछली बेच रहे है कुछ लोग मछली खरीद रहे है।

येलो कलर की बहुत सारी बसें खड़ी हुई हैं बड़ी सी बिल्डिंग बनी हैं पेड़ लगे हुए हैं।

लाइट्स लगी हुई है ट्रॉफिस लगी हुई है आ मिरर में सर वीडियो लेते हुए दिखाई दे रहे है।

आ कुछ लोग खड़े हुए है आ खेत बने है आ पेड़ लगे दिखाई दे रहे है ।

इमेज में रेड चेयर्स रखी हुई है और दीवार पर मिरर्स लगे हुए हैं।